जैसा वो ग्राउन्ड दिख रहा है। उस ग्राउन्ड मे कुछ है एक कच्चा सा एक मकान भी बना हुआ है।

काला आसमान दिख रहा है नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है साइड मे भी ईटों की कुछ-कुछ दिखाई दे रहा है।